एक बिल्डिग हैबड़ी दिखय दे रही है जो दो तीन मंजिल की है और उसको छोटी वाली लाइट से डेकोरेट किया गया है और दो लाइट साइड पीले कलर की जल रही है। और नीचे में कुछ--

पंडाल वगेरा लगा हुआ और व्हाइट कलर का गेट भी बना । जिसमे बहुत से फुल से सजाया गया हैऔर ये रात --

एक बड़ी जिम हैजिसमे कुछ मशीने अ कसरत की रखी हुई नजर आ रही हैं जो स्टील के पाइप दिख रहे हैं और कुछ काले कलर गद्दी दिखाई दे रही हैं।

एक क गेट दरवा एक मकान बन नज़र आ रहा हैं जिसमे दो चैनल गेट लगे हुए हैं जो हाफ खुले हुए हैं और बीचो बिच एक पर्दा दिखाई दे रहा हैं उसमे एक लॉक भी लगा हुआ हैं।

यहां एक बहुत बड़ा ग्राउंड ऐसा दिखाई दे रहा हैं जिसके आइट साइड में बाउडरी दीवाल हुई हैं और बीचो बीच कुछ मकान नज़र आ रहे हैं और ग्राउंड का कुछ तो वो व्यक्ति--